ये सरकारी कार्यालय का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे सफेद कलर से पोता गया दिख रहा है नीचे लाल कलर की बॉउन्ड्री बनाई दिख रही है और सामने एक स्टेज जैसा बनाया है जिसके बनाई दिख रही है और सामने एक रेलिंग लगी हुई दिख रही है।

नदी का फोटू दिख रहा है इसमें नदी के अंदर पानी बहुत कम दिख रहा है कुछ पत्थर नुमा आकृति और पत्थर पड़े दिख रहे है और नदी का पानी

यह किसी पेड़-पौधे के जंगल का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे पौधे है दिखाई दे रहे है पौधे लाइन से बने हुए दिखाई दे रहे है और इस--

क्रीम कलर चम चमकीले कलर का कुछ गोल आकृति का हिस्सा लगाया गया है इसमे लाल और हरे कलर की पत्तियां लगाई गई है पीछे पीले कलर और लाल कलर के फूल दिख रहे है जो टोकने में रखें दिख रहे है सामने एक गुलाब दिख रहा है जो खिला दिख रहा है बाकी गुलाब बंद दिख रहे है पीछे लाल कलर के--

स्टोर या बुक कार्यालय का एक फोटो दिख रहा है जिसमे पीछे बहुत सारे रैक बने हुए है जिसके अंदर बहुत सारी बुक रखी दिख रही है रैक लकड़ी के बने दिख रहें है सामने एक--

यह आलू खेत से निकाला गया दिख रहे है जिसके ऊपर बहुत सारा पपड़िया कुछ लगी हुई दिख रही है और--

एक गार्डन का फोटो दिखाई दे रहा है जिसमे मे डिजाइन व फूल लगाए गए दिख रहे है पीछे जाली नुमा हिस्सा दिख रहा है कोई दिख रही है जिस पे लाइटिंग का--

ये किसी स्टेशन का फोटो दिखाई दे रहा है इसमे एक बस का पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा है बस का हिस्सा लाल और सफेद कलर का दिखाई दे रहा है सामने एक--

शादी के प्रोग्राम का फोटो दिख रहा है जिसका गेट बनते हुए दिख रहा है गेट लाल कलर की पट पत्तों से बनाया जा रहा उसके ऊपर फूल लगाए जाते हुए दिख रहा है लाल कलर का कार्पेट दिख रहा है।

बहुत सारा सेव दिखाई दे रहे है और एक केरट दिखाई दे रहा है जिसके ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है पीछे चद्दर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है पाइप का हिस्सा दिख रहा है एक व्यक्ति दिख रहा है।

यह एक कप का फोटू दिखाई दे रहा है जिसमें लाल कलर और सफेद कलर का कप दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ चाय रखी दिख रही है।

ये ऑफिस का फोटो दिखाई दे रहा है जिस मे बहुत सारे कैबिन बने दिखाई दे रहे है और कुछ कंप्युटर दिखाई दे रहे है एक कंप्युटर सामने जो दिख रहा है वह चालु दिखाई दे रहा है और उसके साइड मे सी_पी_यु दिखाई दे रहा है एक कैलंडर दिखाई दे रहा है।

किसी जंगल या जू का फोटु दिखाई दे रहा है जिसमें एक शेर सामने बिठा हुआ दिख रहा हैउसके आगे जालियाँ लगी दिख रही है। शेर--

यह एक पियानो और कुछ इन्सट्रूमेंट का फोटो दिखाई दे रहे है जिस के अंदर डब्बे के पियानो बने दिख रहे हैआगे कुछ बेग रखे दिख रहे है यह पियानो पर दिखाई दे रहा है।